ये एक बहोत बड़ा समुंदर है यहाँ पे पांच नाव भी जा रही है एक और पीछे भी है।

ये एक बहोत बड़ी दुकान है और यहां पे बहोत ज्यादा शैम्पू रखे हुए है और यहां पे--

कुत्ते नहवाने के शैंपू भी रखे हुए हैं और यहां पे बिस्कुट भी रखे हुए कुत्ते वाले--

और यहां पे एक नीले कलर बोतल भी रखी हुई है।

और यहाँ पे बहोत बढ़िया कुर्सी रखीं हुई--

और यहां पे बड़ी बड़ी झोला भी लगा रखी है और यहां पे बहोत ज्यादा बच्चे--

यहां पे बच्चे लंच कर रहे हैं खाना खा रहे हैं।

बैठने के लिए बैठने के लिए वो जी--

ये एक बहोत बड़ी दुकान है यहां पर डॉगी का समान मिलते हैं यहां पे अलग अलग ब्रांड के कुत्ते मिलते हैं।

और यहां पे पत्ते भी लगे हुए हैं यहां पे--

और यहां पे कैमरे भी रखे हुए है। यहां पे बहोत जादा डब्बे भी रखे हुए है।

खेलने आते हैं और यहां पे जे_सी_बी भी खड़ी--

ये एक बहोत बड़ा जंगल है और यहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए हैं यहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहां पे एक--

ये एक बहुत बड़ी जिम है और यहां पे एक लड़का जिम कर रहया है।

बलब भी जल रहे हैं और यहां पे--

और यहां पे बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाये हुए है।

ये एक ई_रिक्शा की बहोत बड़ी एजेंसी है यहां पर चार्जिंग वाली स्कूटी --

यहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और यहां पे पहाड़ के ऊपर ऊंचे ऊंचे घर बनाए हुए हैं।

यहां पे एक हनुमान जी की मूर्ति भी है वो भी बहुत बड़ी है।

यहाँ पे बहुत ज्यादा फूल रखे हुए हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग-अलग कलर के फूल लगाए हुए हैं।

यहां पे बहुत बड़े-बड़े ट्रक खड़े हुए हैं यहां पे बहुत बड़े-बड़े ट्रक बनाए जाते हैं यहां पे एक बहुत सुंदर पीला कलर का ट्रक खड़ा हुआ है।